यहां का प्रवेश द्वार खुला दिखाई दे रहा है।

लोग बाहर में इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां उपस्थित लोगों में बहुत सारे लोग एक ही प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं।

यहां एक झरना भी बना हुआ है।

इसी जगह पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं।

प्रवेश द्वार के बाहर लाइटें लगाई गई है।

इस जगह पर मेनू चार्ट लगा हुआ है।

तट के किनारे बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं।

नाव में बहुत सारी रसियां बांधी गई है।

शोरुम के अंदर भी कुछ गाड़ियां रखी हुई है।

इस जगह पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उर्दू से कुछ लिखा है।